यहां पर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है यहां पर काफी मात्रा में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

इसमें अनेक रंग बिरंगे कपड़े हैं लेडीज के से लेकर पुरुष तक के कपड़े यहां पर मिलते हैं।

लाल लाल रंग के पर्दे भी लगी हुई है सफेद कलर है मशीने ल दिखाई दे रही है।

बहुत ही मात्रा में पानी है एवं कपासी मेघ भी दिखाई दे रही है जिन्हें बादल कहते आस पास में अन्य --

यहां पर मुझे एक भीड़भाड़ वाली जगह दिखाई दे रही है और यहां पर --

अन्य बहुत सारी मिठाईयां हैं बहुत ही अच्छी मिठाईयां है खाने में स्वादिष्ट है इनके नीचे अखबार है।

यहां पर कुछ पेड़ पौधे भी है।

यहां पर कुछ मोटरसाइकिले है तो कुछ स्कूटियाँ है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान को यहां पर विक्रय किया जाता है मुझे यहां पर--

यहां पर एक सफेद कलर किया हुआ घर है इस घर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है।

बहुत ही अच्छी साफ सफाई की हुई है एवं गुब्बारे भी लगे हुए हैं जिसे अंग्रेजी में बैलून कहते हैं।